मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार मन की बात में एक बार फिर आप सब का स्वागत है
ऐसे तो मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को होता है लेकिन इस बार एक सप्ताह पहले ही हो रहा है
आप सब जानते ही हैं अगले हफ्ते मैं अमेरिका में रहूँगा और वहाँ बहुत सारी भागदौड़ भी रहेगी और इसलिए मैंने सोचा वहाँ जाने से पहले आपसे बात कर लूँ और इससे बढ़िया क्या होगा जनताजनार्दन का आशीर्वाद आपकी प्रेरणा मेरी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी
साथियो बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने ये अच्छा काम किया वो बड़ा काम किया
मन की बात के कितने ही श्रोता अपनी चिट्ठियों में बहुत सारी प्रशंसा करते हैं
कोई कहता है ये किया कोई कहता है वो किया ये अच्छा किया ये ज्यादा अच्छा किया ये बढ़िया किया लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास उनकी मेहनत उनकी इच्छाशक्ति को देखता हूँ तो खुद अपने आप अभिभूत हो जाता हूँ
बड़े से बड़ा लक्ष्य हो कठिनसेकठिन चुनौती हो भारत के लोगों का सामूहिक बल सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है
अभी हमने दोतीन दिन पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया
तेज चलने वाली हवाएँ तेज बारिश
साइक्लोन बिपरजॉय बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहसनहस कर दिया लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुक़ाबला किया वो भी उतना ही अभूतपूर्व है
दो दिन बाद ही कच्छ के लोग अपना नया वर्ष यानि आषाढ़ी बीज भी मनाने जा रहे हैं
ये भी संयोग है कि आषाढ़ी बीज कच्छ में वर्षा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है
मैं इतने साल कच्छ आताजाता रहा हूँ वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है और इसके लिए कच्छ के लोगों का हौंसला और उनकी जिजीविषा के बारे मैं अच्छी तरह जानता हूँ
दो दशक पहले के विनाशकारी भूकंप के बाद जिस कच्छ के बारे में कहा जाता था कि वो कभी उठ नहीं पाएगा आज वही जिला देश के तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है
मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे
साथियो प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का ज़ोर नहीं होता लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है
प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण
आजकल मोनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है
इसीलिए ही आज देश कैच थे रैन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है
पिछले महीने मन की बात में ही हमने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा की थी
इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एकएक बूंद बचाने के लिए जीजान से लगे हैं
ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी
तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान हैं
आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाईयाँ रही हैं
इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गाँव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं
तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में गाँव का पानी गाँव में
आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गाँव में भूजल स्तर सुधर रहा है
ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है
यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी
समय के साथ वो लुप्त हो गई लेकिन स्थानीय स्मृतियाँ और जनकथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा
आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी
लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है
नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है
साथियो ये नदी नहर सरोवर ये केवल जलस्त्रोत ही नहीं होते हैं बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं
ऐसा ही एक दृश्य अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला
ये इलाका ज्यादातर सूखे की चपेट में रहता है
पांच दशक के इंतजार के बाद यहाँ निलवंडे दम निलवंडे डैम की कैनल का काम अब पूरा हो रहा है
कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरान कैनल में पानी छोड़ा गया था
इस दौरान जो तस्वीरें आयी वो वाकई भावुक करने वाली थी
गांव के लोग ऐसे झूम रहे थे जैसे होलीदिवाली का त्योहार हो
साथियो जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा
छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है
विशेषकर जलप्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं
उनके बनाए जलदुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं
इस महीने की शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं
इस अवसर को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है
इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया
मुझे याद है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे रायगढ़ जाने उस पवित्र भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला था
यह हम सबका कर्तव्य है कि इस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें उनसे सीखें
इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी
मेरे प्यारे देशवासियो आपने रामायण की उस नन्हीं गिलहरी के बारे में जरुर सुना होगा जो रामसेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी
कहने का मतलब ये कि जब नीयत साफ हो प्रयासों में ईमानदारी हो तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता
भारत भी आज इसी नेक नीयत से एक बहुत बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहा है
ये चुनौती है टीबी की जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है
भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य बहुत बड़ा ज़रूर है
एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है
इस क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है
देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं
गाँवदेहात में पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है
कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं
ये जनभागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है
इसी भागीदारी की वजह से आज देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है और ये पुण्य का काम किया है क़रीबक़रीब 85 हजार निक्षय मित्रों ने
मुझे खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने ग्राम प्रधानों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है कि वो अपने गांव में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे
नैनीताल के एक गांव के निक्षय मित्र श्रीमान दीकर सिंह मेवाड़ी जी ने टीबीके छह मरीजों को गोद लिया है
ऐसे ही किन्नौर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र श्रीमान ज्ञान सिंह जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरुरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटे हैं
भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवा साथी भी पीछे नहीं हैं
हिमाचल प्रदेश के ऊना की 7 साल की बेटी नलिनी सिंह का कमाल देखिए
बिटिया नलिनी अपनी पॉकेट मोनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है
आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है लेकिन एमपी के कटनी जिले की 13 साल की मीनाक्षी और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर्जी दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं
इन दोनों बच्चो ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में लगा दिए हैं
ये सभी उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरक भी हैं
कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं
मेरे प्यारे देशवासियो हम भारतवासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं
हम अपनी चीज़ों से प्रेम करते हैं और नई चीज़ों को आत्मसात भी करते हैं
इसी का एक उदाहरण है जापान की तकनीक मियावाकी अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हराभरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है
मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और दोतीन दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं
अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलगअलग हिस्सों में हो रहा है
हमारे यहाँ केरला के एक टीचर श्रीमान राफी रामनाथ जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी
दरअसल रामनाथ जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृति और पर्यावरण के बारे में गहराई से समझाना चाहते थे
इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला
उनका ये गार्डन अब एक बायोडायवर्सिटी ज़ोन बन चुका है
उनकी इस कामयाबी ने उन्हें और भी प्रेरणा दी
इसके बाद राफी जी ने मियावाकी तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानि छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम्
अब इतना खूबसूरत नाम तो एक शिक्षक ही रख सकता है विद्यावनम्
रामनाथ जी के इस विद्यावनम् में छोटी सी जगह में 115 वेराइटीज के 450 से अधिक पेड़ लगाए गए
उनके स्टूडेंट्स भी इनके रखरखाव में उनका हाथ बटाते हैं
इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे आम नागरिक काफी भीड़ उमड़ती है
मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह यहाँ तक कि शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है
कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवड़िया एकता नगर में मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था
कच्छ में भी 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में मियावाकी पद्धति से स्मृति वन बनाया गया है
कच्छ जैसी जगह पर इसका सफल होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी ये तकनीक कितनी प्रभावी है
इसी तरह अंबाजी और पावागढ़ में भी मियावाकी मेथोड से पौधे लगाए गए हैं
मुझे पता चला है कि लखनऊ के अलीगंज में भी एक मियावाकी उद्यान तैयार किया जा रहा है
पिछले चार साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज्यादा जंगलों पर काम किया गया है
अब तो ये तकनीक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है
सिंगापुर पारिस ऑस्ट्रेलिया मलेशिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है
मैं देशवासियों से खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि वे मियावाकी पद्धति के बारे में जरुर जानने का प्रयास करें
इसके जरिए आप अपनी धरती और प्रकृति को हराभरा और स्वच्छ बनाने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो आजकल हमारे देश में जम्मूकश्मीर की खूब चर्चा होती है
कभी बढ़ते पर्यटन के कारण तो कभी G20 के शानदार आयोजनों के कारण
कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादरू देश के बाहर भी पसंद किए जा रहे हैं
अब जम्मूकश्मीर के बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है
बारामूला में खेतीबाड़ी तो काफी समय से होती है लेकिन यहाँ दूध की कमी रहती थी
बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया
यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया
इस काम में सबसे आगे यहाँ की महिलाएं आईं जैसे कि एक बहन हैं इशरत नबी
इशरत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मिर सिस्टर्स डैरी फार्म मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू किया है
उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब डेढ़सौ लीटर दूध की बिक्री हो रही है
ऐसे ही सोपोर के एक साथी हैं वसीम अनायत
वसीम के पास दो दर्जन से ज्यादा पशु हैं और वो हर दिन दोसौ लीटर से ज्यादा दूध बेचते हैं
एक और युवा आबिद हुसैन भी डेयरी का काम कर रहें हैं
इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है
ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज साढ़े 5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है
पूरा बारामूला एक नयी श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है
पिछले ढाईतीन वर्षों में यहाँ 500 से ज्यादा डैरी यूनिट्स लगी हैं
बारामूला की डैरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है
किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छाशक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती है
मेरे प्यारे देशवासियो इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरी आई हैं
भारत की टीम ने पहली बार वूमेनएस जूनियर एएसआईए कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है
इसी महीने हमारी menएस हॉकी टीम ने भी जूनियर एएसआईए कप जीता है
इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाले टीम भी बन गए हैं
जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया
भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है
इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल्स थे उसमें से 20 अकेले भारत के खाते में आए हैं
इसी जून में एशियन अंडर ट्वेंटी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप भी हुई
इसमें भारत पदक तालिका में 45 देशों में टॉप तीन में रहा
साथियो पहले एक समय होता था जब हमें अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था लेकिन उनमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था
लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का ज़िक्र कर रहा हूँ तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है
यही हमारे युवाओं की असली ताकत है
ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगिताएं हैं जहाँ आज भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है
जैसे कि लोंग जंप में श्रीशंकर मुरली ने पारिस डायमंड लीग जैसे प्रतिष्ठित आयोजन में देश को ब्रोंज दिलाया है
ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला मेडल है
ऐसे ही एक सफलता हमारी अंडर सेवेंटीन वूमेन रेस्टलिंग टीम ने किर्गिस्तान में भी दर्ज की है
मैं देश के इन सभी एथलीट्स उनके पेरेंट्स और कोचेस सबको उनके प्रयासों के लिए बहुतबहुत बधाई देता हूँ
साथियो इंटरनेशनल आयोजनों में देश की इस सफलता के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत होती है
आज देश के अलगअलग राज्यों में एक नए उत्साह के साथ खेलों के आयोजन होते हैं
इनसे खिलाड़ियों को खेलने जीतने और हार से सीखने का मौका मिलता है
जैसे अभी उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ
इसमें युवाओं में खूब उत्साह और जोश देखने को मिला
इन खेलों में हमारे युवाओं ने ग्यारह रेकॉर्ड तोड़े हैं
इन खेलों में पंजाब यूनिवर्सिटी अमृतसर की गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी और कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले तीन स्थानों पर रही है
साथियो ऐसे टूर्नामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी होता है कि इनसे युवा खिलाड़ियों की कई इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सामने आती हैं
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रोइंग स्पर्धा में असम की कॉटन यूनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया
बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की निधि पवैया घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही
सावित्रीबाई फुले पुने यूनिवर्सिटी के शुभम भंडारे को एंकल इंजुरी के चलते पिछले साल बेंगलुरु में निराशा हाथ लगी थी लेकिन इस बार वे स्टीपलचेज के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं
बुर्दवान यूनिवर्सिटी की सरस्वती कुंडू अपनी कबड्डी टीम की कैप्टेन हैं
वे कई मुश्किलों को पार कर यहाँ तक पहुँची हैं
बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एथलीट्स को टॉप्स शीम से भी बहुत मदद मिल रही है
हमारे खिलाड़ी जितना खेलेंगे उतना ही खिलेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो 21 जून भी अब आ ही गई है
इस बार भी विश्व के कोनेकोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं
इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फोर वसुधैव कुटुंबकम यानि एक विश्वएक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग
यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है
हर बार की तरह इस बार भी देश के कोनेकोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे
साथियो इस बार मुझे न्यू यॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय उन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा
मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है
साथियो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरुर अपनाएं इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं
अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है
योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरुरत ही नहीं होती है
देखिये जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा
मेरे प्यारे देशवासियो परसों यानि 20 जून को ऐतिहासिक रथयात्रा का दिन है
रथयात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है
देश के अलगअलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाती है
ओडिशा के पुरी में होने वाली रथयात्रा तो अपने आपमें अद्भुत होती है
जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली विशाल रथयात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता था
इन रथयात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं वो अपने आपमें बहुत अनुकरणीय है
ये आस्था के साथ ही एक भारतश्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिम्ब होती है
इस पावनपुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुतबहुत शुभकामनाएं
मेरी कामना है भगवान जगन्नाथ सभी देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और सुखसमृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें
साथियो भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़े उत्सव की चर्चा करते हुए मैं देश के राजभवनों में हुए दिलचस्प आयोजनों का भी जरुर उल्लेख करूँगा
अब देश में राजभवनों की पहचान सामाजिक और विकास कार्यों से होने लगी है
आज हमारे राजभवन टीबी मुक्त भारत अभियान के प्राकृतिक खेती से जुड़े अभियान के ध्वजवाहक बन रहे हैं
बीते समय में गुजरात हो गोवा हो तेलंगाना हो महाराष्ट्र हो सिक्किम हो इनके स्थापना दिवस को अलगअलग राजभवनों ने जिस उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया वह अपने आप में एक मिसाल है
यह एक बेहतरीन पहल है जो एक भारतश्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त बनाती है
साथियो भारत लोकतंत्र की जननी है मोथर ओएफ डेमोक्रेसी है
हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते
यह वही दिन है जब हमारे देश पर एमरजेंसी थोपी गई थी
यह भारत के इतिहास का काला दौर था
लाखों लोगों ने एमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था
लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया इतनी यातनाएं दी गईं कि आज भी मन सिहर उठता है
इन अत्याचारों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं
मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था
कुछ दिनों पहले ही एमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई जिसका शीर्षक है टॉर्चर ओएफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया एमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी
इस किताब में ढ़ेर सारी केस स्टडीज हैं बहुत सारे चित्र हैं
मैं चाहूँगा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरुर अवलोकन करें
इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात रंगबिरंगे मोतियों से सजी एक सुंदर माला है जिसका हर मोती अपने आपमें अनूठा और अनमोल है
इस कार्यक्रम का हर एपिसोड बहुत ही जीवंत होता है
हमें सामूहिकता की भावना के साथसाथ समाज के प्रति कर्तव्यभाव और सेवाभाव से भरता है
यहां उन विषयों पर खुलकर चर्चा होती है जिनके बारे में हमें आमतौर पर कम ही पढ़नेसुनने को मिलता है
हम अक्सर देखते हैं कि मन की बात में किसी विषय का जिक्र होने के बाद कैसे अनेकों देशवासियों को नई प्रेरणा मिली
हाल ही में मुझे देश की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना आनंदा शंकर जयंत का एक पत्र मिला
अपने पत्र में उन्होंने मन की बात के उस एपिसोड के बारे में लिखा है जिसमें हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में चर्चा की थी
उस कार्यक्रम में हमने इस फील्ड से जुड़े लोगों की प्रतिभा को एक्नावलेज किया था
मन की बात के उस कार्यक्रम से प्रेरित होकर आनंदा शंकर जयंत ने कुट्टी कहानी तैयार की है
यह बच्चों के लिए अलगअलग भाषाओं की कहानियों का एक बेहतरीन संग्रह है
यह प्रयास इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमारे बच्चों का अपनी संस्कृति से लगाव और गहरा होता है
उन्होंने इन कहानियों के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किए हैं
मैंने आनंदा शंकर जयंत के इस प्रयास की विशेषतौर पर इसलिए चर्चा की क्योंकि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे देशवासियों के अच्छे काम दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं
इससे सीखकर वे भी अपने हुनर से देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं
यही तो हम भारतवासियों का वो कलेक्टिव पॉवर है जो देश की प्रगति में नई शक्ति भर रही है
मेरे प्यारे देशवासियो इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही
अगली बार नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी
बारिश का समय है इसलिए अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिये
संतुलित खाईये और स्वस्थ रहिये
हाँ योगा जरुर कीजिये
अब कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ भी खत्म होने को है
मैं बच्चों से भी कहूंगा कि होमवर्क लास्ट दिन के लिए पेंडिंग ना रखें
काम खत्म करिए और निश्चिंत रहिए
बहुत बहुत धन्यवाद